और बहोत सारे सामान है।

उम्म पा पा डाल है छोटा-मोटा।

आ डीजल भी भरा जाता है पेट्रोल भी भरा जाता है।

यहाँ एक पेंडल बना गया है।

पैसा निकाशी करने के लिए जमा करने के लिए --

और उधर लाइट लगाया है।

दुकान है। बड़ा जैसा दुकान है। बड़ा जैसा दुकान है।

ओर साफ़ पानी यहाँ रखा गया है ओर वहाँ कछुआ भी है बहुत सारे कछुआ।